उसी के पास में कृष्णा कंप्यूटर करके एक लैपटॉप की शॉप है।

बोरियां रखी हुई हैं और साथ ही में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं जो की समान ले रहे हैं।